रंग की इमारत नजर आ रही है आस पास में हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक बहोत ही सुन्दर अकार में--

इस तस्वीर में कुछ व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं जोकि मछली बेच रहे हैं।

को सहारा देने के लिए लगाई गई है यहां पर घर बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पे कु--

बगीचे के आसपास में कुछ इमारतें नज़र आ रही हैं।

कार का ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है।

यह एक दुकान की तस्वीर नजर आ रही है जिसमें खानो में सामान नजर आ रहा है जैसे नहाने की साबुन शैंपू तेल।

यहां पर बैठने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं।

पेड़ों के ऊपर कुछ ह रंग बिरंगे फूल भी है।

झोपड़ी का रंग लाल रंग का है और इसके खंभे हरे रंग के हैं।

यह एक मस्जिद की तस्वीर है।

और उसके सामने एक प्लास्टिक का टेबल और कुर्सियां रखी हुई है।

जिसमें कुछ पंछी नहा रहे है।

जिन्हें अनेको प्रकार के कपड़े पहनाये हुए हैं।

एक दो लकड़ी के खाने हैं जिनके ऊपर कुछ कुछ सामान रखा हुआ--